लड़का हमे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपने फेस पर मास्क लगा कर रखा है। यहाँ हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ --

पानी बतासे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर दो से तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक ठेले के पास खड़ा है। दो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बाहर की ओर जमीन थोड़ी उबड-खाबड सी है।